और ए.टी.एम. में कुछ लोग पैसे निकाल रहें हैं। कुछ लोग बाहर मोबाइल चलाते हुए जा रहें हैं। एक बच्चा खड़ा है जो थैली में कुछ लिए हुए हैं खाने वाला सामान है।

और इसमें कॉफ़ी कोका कोला और भी खाने की बहुत सारी सामान है दिखाई दे रही है जो शीशे में पैक किये हुए हैं।

बहुत सरे मुर्तियें हैं जो बन रहे हैं कुछ लोग बाहर --